और पास मे कुछ लोग दिख रहे हैं। एक --

मानो ऐसा लग रहा है की ये ठंडी का मोस --

मुझे एक चिते दिख रही है। म --

और पास में पिलर गई है और उसके पीछे --

इसमें बहोत सारी खिडकियां हैं और बॉर्डर लाल र --

वहाँ की डिजाइने बोहोत ही सुन्दर लग रही है --

पास में ही त्रिपाल घेर के पर्दे लगा के --

पिला ऑरेंज बुलू लाल --

और दीवाल सफेद रंग की है और लाइट भी जल --

और डिब्बे में बहुत सारे सामान हैं।

उसमे बोहो सारी खिरकीया लगी हुई है।

कुछ बैलून नजर आ रहे हैं हरे।

वो हरे रंग की है और उसकी पास की बहार मे --

मुझे एक चीत दिख रही है।

मुझे इक चित्र नजर आ रही है मानो एैसा लग रहा है --

ऐसा लग रहा है कि ये जिम की स्थान है।

पौधे नज़र आ रहे है जिसमें से फूल निकली हुई --

और वो पीले रंग की है और उसके ऊपर हल्की लाल रंग भी दिख रही है।